ऐसे सीढ़ियां दिखाएं गई है यह चित्र में यह दिखाया गया है।

यह दृश्य में यह दिखाया जा रहा है कि--

अब मुझे आधा आसमानों में भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है ।

यहां पर यह दिखाई दे रहा है--

और एनेमी वगैरह जो आज करके युवा पीढ़ी बड़ा ही--

किसी चीज को मनाने के लिए देखने में तो लग रहा है।

होली या होली जैसे त्योहार मनाया जा रहा है और--